जैसा की मै यहाँ देख पा रही हू यहाँ पर ये स्टेज है जो की ए-ए सफ़ेद रंग का सोफा रखा हुआ है पीछे जो है वो फूलो से सजावटे --

जैसा की मै यहाँ देख पा रही हूं यहाँ पर ये भवन के अकार का घर बना हुआ है तथा ये स्लेटी रंग का कहीं-कहीं भूरे रंग का --

ए-ए दिवार नीले रंग की है बहोत सारे लोग खड़े है बड़े-बड़े पेड़-पौधे लगे है हरे-हरे रंग के बतख की चोंच गुलाबी रंग की है इसमें।

कुर्सियाँ रखी हैं छोटा-छोटा सामान लगा हुआ है अगरबत्ती धूपबत्ती इत्यादि रखी हुई हैं केंडल के म --

उजो सिलेटी रंग का काही रंग का है तथा यहाँ पर बड़े -बड़े पिलर काले रंग के खड़े हुए है जाली लगी हुई है सिलेटी रंग की इसमें।

जो कि सरिया दिख रही है इसके ऊपर-ऊपर की सरिया लगी है इसमें।

जैसा की मै या देख पा रही है ये स्टेज है जो की बहोत बड़ा है तथा यहाँ पर बहुत सुंदर सि लाइटे लगिन लाल पीली नीली।

लड़कियों को कुछ उपहार बांट रही है इनके पीछे एक दीवार --

टीन से आसमान सफ़ेद और सिलेटी रंग का बहोत सारे लोग खड़े हुए है यहाँ पर।

दूर-दूर तक पेड़-पौधे काई प्रतीत हो रहे है बड़े-बड़े पहाड़ दिख रहे है इसमें दूर-दूर तक।

यहाँ पर अ केमिकल रखे हुए हैं बोतलों में कांच का गेट है यहां।

भूरे तथा पीले रंग का इसमें चम्मच रक्खा हुआ है।

सिलेटी रंग का है दो ऑटो चल रही है काले और लाल रंग की रिक्शे चल रहे है।

पेड़-पौधे हरे-हरे रंग के --